मेरे को विद्यालय दिखाई दे रहा है जिसपे

पूर्णिया लिखा है तथा यहां गाड़ी पार्किंग एरिया है कई सारे लोग तथा यहां बाइक कार खड़ी दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह दो रोड दिखाई दे रहे हैं तथा तीन ट्रक है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे बस ऑटो दिखाई दे रहे हैं तथा यहाँ --

यह गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है तथा एक गेट है जोकि ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है तथा बाहर एक बाईक खड़ी दिखाई दे रही है रोड दिखाई दे रहा है।

इसके बगल में एक छोटी सी मीनार दिखाई दे रही है जो कि वाइट कलर की है आसमान का कलर यहाँ ब्लू तथा वाइट दिखाई दे रहा है।

एक ऑटो जाते दिखाई दे रहा है रोड पर आदमी चलते दिखाई दे रहे हैं खाली मैदान दिखाई दे रहा है।